कुछ चटाई जैसी कुछ बिछी हुई है जो लाल और सफ़ेद कलर की है पीछे हरी कलर की दीवार दिखाई दे रही है।

चेक वाली शर्ट पहनी हुई है पीछे ग्रीन कलर की दीवार दिखाई दे रही है और बगल मे एक खिड़की दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति के पेरो मे कुछ कर रहा है।

सीढ़ी पर कुछ व्यक्ति आ जा रहे है जिनमे से एक व्यक्ति चेक कलर का शर्ट एंड ब्लैक कलर का जीन्स पहना है।

पीछे एक मकान दिखाई दे रहा है जहा के ऑरेंज कलर की गेट लगी हुई है मकान का कलर सफेद--

यहाँ पे नीला आकाश दिखाई दे रहा है और पीछे कुछ पेड़ लगी हुई है और यह पे एक मंदिर है जिसपे एक पोस्टर लगी हुई है।

यहाँ पे बहुत सारे पत्थर लगे हुए है और पत्थर पे एक त्रिशूल लगा हुआ है नीचे की भूमी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक बस खड़ी हुई है जिस के नीचे की भूमि पक्की है यह एक पक्का रोड है।

यहां पे बहुत से लोग एकसाथ दिखाई दे रहे है पीछे एक महिला भाषण दे रही है और आगे कुछ लोग खड़े हुवे है।